यहां एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने माला पहन--

और उसके ऊपर लिखा है श्रीनिका रोड वे ।

ये एक मंदिर है जिसके सामने बहोत सारे लड़के खड़े हुए है।

ये एक स्विमिंग पूल है जिसमें एक आदमी रेड कलर का टीशर्ट पहने हुए खड़ा हुआ है।

ये तीन बच्चे हाथों से स्टेप करते हुए कुछ दिखाई पड़ रहे हैं।

ये एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें दो डोर दिखाई पड़ रहे--

यह एक मकान बनता हुआ दिख रहा है जिसमें नीचे की तरफ एक नीले कलर का ड्रम रखा हुआ है।

छोटी-सी बाउंड्री खिंची हुई है कुछ छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

काउंटर पे दो तीन भागोंने और एक तराजू रखा हुआ हैं।

इसमें एक स्पून रखा हुआ है एक कांटे वाला स्पून रखा हुआ है।

और काफी दूरी पर एक फोर व्हीलर दिखाई पड़ रही है।

एक खंभा दिखाई पड़ रहा है और इसमें काफी सारे दिलवाले स्टिक लगी हु--

अंदर से बहुत सारी मशीनें और कुछ डिब्बे रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

जिन्होंने अपने सिर में अंगोछा बांध रखा है कुछ पेड़ पौधे और बहोत सारी मिट्टी भी दिखाई पड़ रही है।

नीचे की तरफ नीले रंग की एक फर्श पड़ी हुई है।

यहां पे बोहोत सारे पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं कुछ पानी में तैरते हुए दिखाई पड़ रहे कुछ पानी के ऊपर दिखाई पड़ रहे --

ऊपर की तरफ पंखे लगे हुए हैं बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

और कुछ टेबल पड़ी हुई है जिनपे फ्लावर पॉट रखे हुए कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारी टेबल और चेयर दिखाई पड़ रही है बहोत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है।

इसका ना कोई डोर दिखाई पड़ रहा है बस विंडो दिखाई पड़ रही है।